अलग अलग तरह की मच्छियां हैं छोटी मच्छी है बड़ी मच्छी है एक दुकानदार है रेड टी शर्ट पहने हुए।

सामने व्हाइट कलर की बिल्डिंग है।

जिसके ऊपर तीन मंदिर से बने हुए हैं।

इस कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं।

व्हाइट कलर की अल अं दीवार है।

और पार्किंग में बहोत सारी सफेद कलर की गाड़ियां है।

एक स्कूटी खड़ी है पेड़ है बगल में--

और पोस्टर पे जो लिखा है मोटापा घटाएं वजन बढ़ाए--

दो मजदूर हैं एक ट्रक पे आदमी खड़े हैं।

मिल रहे हैं इंग्लिश टॉयलेट है।

आं जिम पे ब्राउन कलर का पेंट है येलो पेंट है।

यहां पे बहुत सारी अं उं बुक्स की दुकानें हैं।

दो बस खड़ी हैं दोनों बस येलो कलर की हैं।

यहां पे एक बहोत बड़ा पार्क टाइप का है।

ऊपर फिनायल की बोतल रखी है हार्पिक की बोतल रखी है। बहोत सारी रेड पैकेट्स --

ये एक कमरा है कमरे के अंदर ग्रे कलर की कारपेट जैसी बिछी हुई है।